यह एक मछली मार्किट है जहाँ कई प्रकार की मछलियाँ बेचीं जाती है।

--करने के लिए जो मतलब पेंटिंग टाइप का है चित्र बनाना है और यहाँ पे शिक्षक उनका मतलब चेक कर रहे है की बच्चें अच्छे से बना रहे है की नहीं बना रहे है काफ़ी अच्छा स्कूल है ऐसा काम--

यह काफ़ी ही अच्छा होटल है जहाँ पर रात को रुकने की विवस्ता है रूम्स वगेरा कपल्स वगेरा का रूमस यहाँ पे मिलता है।

यहाँ की सबके बड़ी बात है आपकों किसी के नीचे मतलब कुर्सियाँ लगाई हुई है टेबल लगाए हुए है ऊपर की आसमा आप रात में आगए मतलब बहुत ही अच्छा आनंद ले सकते है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते है खाना पीना खा सक--